उसमें पत्ता गोभी और गाजर फ्लॉवर बना के रखा है साइड में चिकन तंदूरी के उसके ऊपर फॉइल लपटी हुई है वो एक बेंच --

एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पे अ ब ब्लू पैंट की सामने की तरफ एक काँच का दरवाजा एक तो लगा हुआ नीचे जाली है उप उप कार के साइड में पेपर चिपके हुए।

ये यहाँ गले मे सबके मफ़लर डले हुए है दुपट्टे ऊपर दरवाजा या पीछे की तरफ बिल्डिंग है।